तार सा पकड़ रखा है पीछे से एक लाइट जल रही है एक ट्यूब लाइट जल रही है।

और सामने की ओर से एक अच्छे से रोशनी दिखाई दे रही है धूप से दिखाई दे रही है।

पट्टीदार और वाइट कलर का पड़ा हुआ है दो तीन चार आदमी खड़े हुए हैं बराबर में कुछ फूल लगे हुए हैं।

टेबल पर एक सैनिटाइजर रखा हुआ है कुछ शीशा रखा हुआ है।

जो कि यहां पर कुछ पानी की बोतलें भी पीने की रख रखी हैं और ये गोल गोल घेरे में कुछ कलर भी रखे हुए हैं कलर के ऊपर से ही गोल गोल घेरों में बच्चे खेल रहे हैं एक बच्चा जो--

यहां पर पानी बह रहा है नदी है कुछ बड़े बड़े नदी में पत्थर पड़े हुए हैं।

और काफी सा बादल सा दिखाई दे रहा है पीछे से कुछ पत्थर पड़े हैं।

यहां पर एक ये नर्सरी नजर आ रही है नर्सरी में काफी सारे--

यहां पर काफी अच्छे से घर दिखाई दे रहे हैं कुछ पेड़ है जो भी बिना पत्तों के दिखाई दे रहे हैं और ये घर हैं इनके ऊपर कुछ बर्फ सी रुई सी लगी हुई है।

यहां पर बड़ी-बड़ी सी दो ट्यूब लाइट दिखाई दे रही हैं एक गोल लाइट लगी हुई है।

यहां ये लकड़ी का बड़ा सा दरवाजा दिखाई दे रहा है उसके ऊपर खिड़कियां लगी हुई है शीशे लगे हुए हैं।

गमले में और एक पेड़ दूसरे दरवाजे के बाहर है गमले में और एक आदमी दिखाई दे रहा है उस और एक यह चैन दिखाई दे रही है।

परछाइयां हैं और ये सामने को घर बने हुए हैं।

कुछ लोग घूम रहे हैं कुछ सामान भी रखा हुआ है।

नीचे को एक दुकान है दुकान के बराबर में एक घर बना हुआ है जिसपे दरवाजा लगा है दरवाजे के बाहर--

यहां पर काफी बड़ा एक हॉल सा नजर आ रहा है ऊपर कई सारे पंखे टंगे हुए हैं।

और ये बहुत सारे जैकेटी टंग रही है कुछ ब्लू कलर की कुछ ब्लैक कलर की कुछ येलो कलर की --

और उसके ऊपर खिड़कियां ग्रीन कलर की दिखाई दे रही हैं उसके बराबर में एक और बिल्डिंग है।

सीसा लगा हुआ है एक बराबर में कोई अलमारी रखी हुई है लोहे की अलमारियां बनी हुई हैं लोहे के अलमारियों के अंदर सामान है।

यहां पर एक टेबल रखी हुई है एक बोर्ड लगा हुआ है।